जिसमें हमें पर्वत भी दिखाई दे रहें हैं ।

एक सफ़ेद और एक काला है।

उसके नीचे चार छोटे-छोटे बोर्ड भी दिखाई दे रहें हैं।

लगी हुईं हैं और एक बड़ा सा घंटा भी दिखाई दे रहा है।

छत और द्वार दिखाई दे रहा है।

हुक भी दिखाई रहा है जिसपर एक बड़ा सा थैला लटका हुआ है।

बड़े-बड़े पर्वत और नीचे बहता हुआ जल दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक बड़ी सी कक्षा दिखाई दे रही है जिसमें --

और ऊपर की ओर टिन का शेड भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे की ओर पार्क में फाउंटेन दिखाई दे रहा हैं ।

जिसके पास एक लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई है।

जिसका भूरा रंग है और बाहर की ओर हरे हरे पौधे दिखाई दे रहें हैं।